ये एक ब्लोकस ब्लॉक वगैरा की फोटो है जेसा की आप देख सकते है यहाँ कुछ अ लोग है जो गाड़ी से जा रहे है ओर कुछ लोग आपने गाड़ी को पार्क किए हुए है बगल मे --

दीवार मे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद की पिक्चर भी लगाई गई है और ये ढे बेग भी रखे हुए है बेंच --

कॉलेज की पिक्चर ली गई है जिसमे की आप देख सकते हो ये जो बोर्ड है सामने ये काफी बड़ी है।